यह कथक डांस शो हो रहा है जहां दो लड़कियां कथक डांस कर रही हैं उसमें एक दो लड़कियां हैं जिसमें से--

और बहोत सारे प्यारे प्यारे पाये दिख रहे हैं यहां पर--

एंड नीचे सब अह एक्सरसाइज कर रही हैं यहां जिसमें एक लड़की--

ऊं जगह पर सभी स्केटिंग्स एंड इंजॉयस कर रहे हैं।

मैं देख पा रही हूं कि इसमें बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए छ बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे एंड --

साइड में मिट्टी के जैसा कुछ पहाड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा।

एंड एक जींस से जो पौधे पे छुपा हुआ है।

ये बहोत सारे टॉयज में देख पा रही हूं जहां जिसमें से पांडा टेडी बेयर एंड अअ--

की ये एक घर है जिसके अंदर में फैन लटका हुआ है।

हेलो गाइस तो मैं देख पा रही हूं की ये जगह काफी भीड़ है एंड अ लिखा हुआ है ग्राम श्री मंडप हरिद्वार क्षेत्र।

लौकी यहां पास कुछ खाने के लिए बैठे हुए टेबल पे एंड साइड पे बहोत ही प्यारा प्यारा ग्लास को डेकोरेट करके रखा गया।

अं झूले लगे हुए हैं एंड बहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं जो कि मैं मुझे दिखाई दे रहा है।

हैलो गाइस तो मैं देख पा रहीं हूं कि सामने से दो आदमी आ रहे है।

हैलो गाइस तो मैं देख पा रही हूं कि यहां एक झांकी लगा हुआ है जो कि--

कपड़ा कलेक्शन है जो की बहोत ही सारे में जैकेट जींस अह वगैरा वगैरा कुछ कुछ मुझे दिखाई दे रहा है।